न नदी को देख रहे है और नदी के आसपास हरी-हरी लगी है।

लाइट लगी हुवी है और बहोत सारे कपडे रखे हुवे है और स्टैचू उन कपडों को पहने हुवे है।

यहाँ पर एक मच्छी रखी हुई है। जिस पर कलर लगा हुआ है। पास ही में एक पानी की बॉटल और एक सफ़ेद कलर का बॉक्स रखा हुआ है।

और एक नदी के पास ही में एक पर्वत बना है और एक --

पास ही में एक डस्टबिन रखा है और गाड़ी के ऊपर एक हेलमेट रखा है।

और बोट बोट खाली है और यहाँ पर एक व्यक्ति बोट को पकड़े हुए है।

जगह है जहाँ पर बहोत सारे व्यक्ति खाना खा रहे है। व्यक्तिओं के पास प्लेटे भी है।

मजार के ऊपर चादर डली हुई है। फूलों की माला डली हुई है।

यह एक स्विमिंग पूल का नजारा है जहाँ पर बोहोत सारे झूले लगे हुए हैं। कुछ व्यक्ति झूलों पे झूल रहे हैं। कुछ व्यक्ति सबसे ऊपर झूलों पे --

फूलों से डेकोरेशन हो रखी है ग्रीन कलर की मैट बिछी हुई है कत्था कलर की चेयर रखी हुई है और दो तितली बने हुए हैं।

लोहे की छड़ों से बनी हुई है कत्था कलर की बाउंड्री है और यहीं पर --

यहाँ पर एक कत्थई कलर से बिल्डिंग है और यहाँ पर बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर पंखे लगे हुए है बिल्डिंग के नीचे एक और दुकान खुली हुई है जिसका-

ग्रीन कलर से पत्ते हैं सफ़ेद कलर के परदे लगे हुए हैं जहाँ पर भी फूल रखे --

एक बच्चे ग्लू चिपका रही है। एक ब् बच्ची कार् शीट लिए हुए है। एक व्य --

पन्नियों के ऊपर पौधे लगाए गए हैं औ पौधे --

ब्लैक कलर से दीवाल है और व्यक्ति मोबाइल को हाथ --

यहाँ पर बल्ड बैंक खुला हुआ है जहाँ पर बहोत सारी गाड़ी रखी हुई हैं।

यहाँ पर मोटर साइकिल भी रखी हुइ हैं ब्लड बैंक का कलर --

यहाँ पर एक व्यक्ति का पाऊ टूटा है जिसके पाऊ में पट्टी बंधी हुई है। पाऊ में मौजा पहने हुए है। कत्थई कलर से --

गेट भी लगा हुआ है जो ब्लैक कलर से है वाइट कलर से पूरी बल्डिंग है ब्लैक कलर की एक व्यक्ति जैकेट --

यह यहाँ पर एक मैंदान बना हुआ है जहाँ हरे कलर की घांस लगी हुवी है छोटे-छोटे सी।

छोटे-छोटे से पौधे लगे हुए हैं मैदान में।

और पार्क ए पार्क के पास कत्थे कलर से पट्टी और येल्लो कलर से प --

और बड़े-बड़े पेड़े भी लगे हुए पेड़ों की कटिंग भी हो रखी है और एक --